रोड पर तीन गाड़ियां सफेद रंग की दिखाई दे रही हैं।

जिसमें बीच बीच में घास उगी हुई है और बीच बीच में पत्थर लगे हुए हैं।

ने बादामी रंग की टीशर्ट पहनी हुई है ये जिम का फोटो लग रहा है।

पत्थरों का रंग काला और सफेद दिखाई दे--

ये तस्वीर एक खुदाई की है जिसमें खुदान खदान चल रही है।

के हाथ में एक सी_एन_जी भरने वाली नोजल दिखाई दे रही है।

ये दृश्य एक स्टूडियो का है जिसका नाम विनायक स्टूडियो कंप्यूटर ऑनलाइन है।

दुकान के अंडर कई वस्तुएं लगी दिखाई दे रही हैं।

इसमें कुछ बच्चे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक व्यक्ति नीले रंग की धारी वाली कमीज पहने हुए दिखाया--

यह तस्वीर का संगीत क्लास की है जिसमें कई तरह के यंत्र रखे हुए हैं।

के आगे एक रिफ्लेक्टर लगा है जिस पर वेलकम टू रेड क्यूब लिखा हुआ है।

पीछे दीवार पर कई तरह की कलाकृतियां उभरी हुई है।

इसमें एक पंख लगा हुआ है और इसकी फॉर सीलिंग में लाल रंग की और नीले रंग की लाइटें लगी हुई दिखाई दे रही हैं।